जहाँ पे ऊपर एक क्रॉस का सिम्ब्ल है।

ये चित्र में तीन लड़के बैठे हुए हैं।

ये भी चित्र एक कॉफी शॉप का है जहाँ पे कुर्सी टेबिल लगे हुए है बोहत सारे लाइट्स जल रहे है।